यहाँ पर कई सारे मशीनें दिखाई दे रही हैं और कुछ व्यक्ति वर्क करते दिखाई दे रहे हैं।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

यहाँ पर एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है यहाँ पे खम्भे दिखाई दे रहे हैं लाइट के और यहाँ पर ऑटो दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर कुछ व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर पेड़ भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर रखी हुई सीढ़ी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है यहाँ पर नाव खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर ग्रीन घास भी दिखाई दे रही --